और जो केबिन है वो खुला हुआ है और शीशे का है यहाँ पर एक गार्ड भी है जो बंदूक लेकर खड़ा हु --

सामने में एक दीवार देख पा रहा हूँ दीवार हरे रंग की है जिस पर एक बोर्ड लगा हुआ है ।

यहाँ पे पेड़ लगे हुए है थोड़े से पौधे भी है जिसके पीछे एक बिल्डिंग बनी हुई है जो कि स्लेटी रंग --

जो स्लेटी रंग की है जिसके पास में एक कार खड़ी है जो लाल रंग की है।